एक पतथल का दिखाई पड़ रहा है छोटा-सा टेम्पल --

यहाँ पे साइड साइड में बहुत बड़ा - बड़ा पेड़ सब है।

यह फोटो एक प्लेट फॉर्म की ली गई है यहाँ पे शुधा पार्लर लिखा हुआ है यहाँ पे दुकान छोटी -छोटी सी दुकन स--

यहाँ पे एक ऑटो पेट्रोल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो वाला --

इस फोटो में बुध्द भगवान --

यहाँ पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है चारो तरफ जक तक समान सब रखा हुआ है ऊपर भी कपडा सब कुछ हुआ है।

लड़की जुदा बना के गजरा लगा के साड़ी फान के --